यह तस्वीर आपको सायं काल की दर्शायी गई है।

अपने काम को लेकर वार्तालाप करते हुए नजर आ रहे हैं और एक दूसरे से डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

अ अपना आर्डर प्लेस करते हैं और यहां पर फूड कोर्ट खाने के मिठाई--